नीला रंग का कपड़ा दिख रहा है ये यहां पे सोफे रखे हुए हैं।

बच्चे भी दिख रहे हैं गुब्बारे सफेद सं सफेद--

हैं और यहां पे हरियाली है हरियाली दिख रही है।

लाइट दिख रही लाइट के तार से देख रहे हैं और यहां--

लाइट भी दि अंधेरा सा दिख रहा है और ये खड़े कर रहा है।

यहां पे आप देख सकते हो एफ_एफ --

यहां पे लाइट लगी हुई है यहां पे ये--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

पेड़ दिख रहे हैं। यह यहां पर सड़क दिख रही है और यहां पर आप देख सकते हो आसमान दिख रहा है।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

और यहां पर ये घर बना हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो बाइक भी खड़ी हुई हैं दो बाइक दिख रही हैं।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

और पेड़ आदमी ये यहां पे पेप्सी लिखा हुआ है।